जिसमें कई पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

कुछ चद्दरें ऊपर लगी हुई दिखाई दे रही है।

सामने कुछ महिलाएं कुर्सियों पर बैठी हुई दिखाई दे रही है।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

एक चेयर रखी हुई दिखाई दे रही है।

बाईके खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

जिसके ऊपर एक कतार से कई पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

कुछ टेबलें भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

लगाती हुई दिखाई दे रही है।

एक लाइट भी जलती हुई दिखाई दे रही है।

इधर से दिखाई दे रहा है।

सामने एक मॉल जैसा उधर से दिखाई दे रहा रहा है।